जिसके उपर मे बाल दाढ़ी लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक ऑटो दिख रहा है।

जोकि बिहार से है और ये लोग छठ पूजा करने जा रहे हैं।

और हमें दीवाल पे कुछ छोटे छोटे पोस्टर्स भी लगे हुए देख सकते हैं।

यहां पे मिट्टी मेटल से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है।

बहोत से कलर के डब्बे में बहोत सारे सामान भी हमें देखने को मिल सकते हैं।

नीचे में हमें दो पोस्टर्स भी दिख सकते हैं।

इसमें एक बेड हमें देखने को मिल सकता है।

उस घर के पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे है।

के आस पास बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

एक नहाने वाला टब भी दिख रहा है बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुए हैं।

जो कि रात का समय का लग रहा है।

प्लांट का पॉट भी रखा हुआ है इसमें एक पौधा भी लगा हुआ है।

इसके आस पास बहोत सारे कुर्सियां और टेबल रखे हुए हैं।

और एक रेड कलर का स्टार भी लगा हुआ है।

फोटो में हमें एक सामने बहोत मोटा और बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

इसमें बहोत सारे बंबू भी लगे हुए है।

और शीशे से कवर कुछ अलमारी भी दिख रही है।